मस्जिद में बात कर रहे हैं सफेद कपड़ा पहने टोपी का--

करना है अपना अपना पूजा पाठ कर रहे हैं।

ये ऐसे लग रहा है एक होटल से बाहर--

हमम लोग के ऊपर मंदिर है ऊपर में सीधे में लोग आना जाना कर रहे है नीचे में नदी जैसी दिख रहा है लोग बैठे हुए है।

एक टेनिस खेलने का हॉल है जिसमें--

ये दूध डेयरी दुकान दिख रहा हैं जिसमें--

उसमें बहोत टंगा हुआ है का दावा है।

ये बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है।

को कोई आर्मी का दिख रहा है सामने कुर्सी है।